और काफी सारी बाईके खड़ी हुई हैं।

और यहां पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं पूरा एक आसमान दिखाई दे रहा है।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ लोग खड़े हुए है।

सभी ने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है और यहां पीछे कुछ पोस्टर लगे हैं दीवार पर एक घड़ी नजर आ रही--

नीचे एक दुकान है लिखा हुआ है वेज रोल --

ये कबाब रोल्स पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच और काफी सारे यहां पर लोग खड़े हैं एक लड़की और बाकी लड़के हैं।

साइड में लिखा है एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस ऊपर लिखा है--

बाइक भी दिखाई दे रही है और एक अंकल हैं जो साइकिल पे जा रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही--

दो दो वाला चूल्हा दिखाई दे रहा है एक स्विच बोर्ड काफी सारे डिब्बे और खिड़कियां दिखाई दे रही है।

फर्श सफेद रंग की टाइलों का है।

पीछे दो लड़के और दिखाई दे रहे हैं।

एक काले रंग की बिंदी लगाई है। पीछे सफेद कलर की चेयर रखी है।

और एक स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा हैं।

स्टीकर लगा है लिखा है डी_एन ।

और कुछ पर्दे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।